यहां पे एक बस खड़ी हुई है जहां जो पीले रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पे टाइल्स लगे हुए हैं जो सफेद और काली धारी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक ऐ_सी लगी हुई हैं जिसमें रॉड जल रही हैं।

यहां पे पंखे भी लगे दिखाई दे रहे हैं एक पंखा पास में रखा दिखाई दे रहा है।

एक गेट दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का है यहां पे एक मशीन रखी हुई है जो नीले रंग की है।

शीशा लगा हुआ है। शीशे के अंदर एक स्टैचू दिखाई दे रहे है।

यहां और कोटी भी है शेरवानी सफेद और भूरे रंग में है।

कुछ घर ईटों के हैं कुछ घर सफेद और--

यहां पे छोटी छोटी घास उगी हुई है जो सुखी रंग की है।

नाव लकड़ी की बनी हुई है नाव पे बोरी बंधी रखी हुई है।

कुछ हाथ बोरी पे हाथ रखे हुए खड़े हैं आस पास पेड़ पौधे है।

इसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई हैं दरवाजा भी कांच का दिखाई दे रहा है पड़ोस में एक चैनल है यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पे टब तस्ला रखे हुए हैं। यहां पे बाल्टी रखी है।

कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक और दुकान है इसके बाहर बहोत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

आसपास बहुत बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा है।

ये कुछ गोल गोल बल्ब लगे हुए है ऊपर झालर लगी हुई हैं।

आस पास पेड़ पौधे लगे हुए है यहां पे एक पिला गेस्टहाऊस दिखाई दे रहा हैं।

कुछ लोग खेल रहे हैं और कुछ लोग आपस में बातें कर रहें है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं।